यहाँ एक बहोत पुराना भवन है जो मदारीपुर में स्थित है जिसमे तीन कुल गेट हैं।

जोकि हरी-भरी झाड़ियों से हो कर गुजर रहा है।

पंक्षी की एक आँख दिखाई दे रही है जीसके ऊपर लाल रंग की एक पट्टी है।